यह यहाँ पर कुछ लीची है लीची के पत्ते है बास्केट है ये प्लेट पे रखी हुए है पीछे झाड़ू है और लीची में पत्ते भी है एक मोड़ भी है।

यहाँ पर न्यू सलून खुला है | यहाँ पे गेंदे के फूल लगे हुए हैं | एसी सलून खुला है | यहाँ पे एक जेंट्स खड़ा है रेड कलर की चेयर रखी हुई है।

नीचे ग्रीन कलर का कुछ बिछाया है और बैनर पे दो लड़के छपे हुए है | अंदर एक जेंट्स खड़ा हुआ है।

किसी ने पिंक कलर की साड़ी पहनी है | किसी ने रेड कलर की पहनी है | एक बाल्टी है और ग्रीन कलर हो रखा है और नीचे कुछ पड़ा हुआ भी है।

छि ए गी मच्छी को काट रहे हैं | कुछ लोगों ने बास्केट रखी है | यहां पर बाल्टी भी रखी हुई है कुछ कपड़े टंगे हुए है।

चाय की दुकान है एक लड़का खड़ा है उसने कुछ पहन रख उसने कुछ कपड़े पहन रखे हैं कुछ यहां पर कूड़ा पड़ा है कुछ सब कुछ सही है।